यहां पे एक क्लास रूम देख रहा है जहां पे बेंच में कुछ जो टेबल है उसमें कुछ--

में बना हुआ है उसका पास में बहुत सारे पेड़ है।

ये पहाड़ का चित्र देखो मेरे सामने बड़ा सा पहाड़ हैउसके सामने बहुत बड़ा बड़ा बड़ा पेड़।

कुछ बना देख रहा हैं फूल देख रहा हैं पत्ता देख रहा हैं उस तरफ पानी काला कलर का देख रहा हैं।

यहां पे पैर का गार्ड्स रखा है ।

उस साइड में कुछ रास्ते के पास बंदा लोग खड़ा होकर बातें कर रहा है।

एक यहाँ पे एल_जी का ब्रँड का नाम लिखा हुवा हैं। यहाँ पे--

और पीछे बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

है वो मछली बिक रहा है। एक पास में येलो कलर का--

यहां पे पीछे बड़ा बड़ा दो पहाड़ दिखा दे रहा है सामने--

मार्ट में बड़ा-बड़ा पेर भी है उसका पत्ता वाइट कलर का है।

गेट है वो खुला हुआ है सामने एक ढलाई रास्ता दिखाई दे रहा है।

कारपेट बिछा हुआ है ब्लू कलर का रेड कलर का। यहां पे--

आदमी लोग ओर लोग यहां पे हाथ जोड़ करके बाबू होकर बैठा है।

एक पुलदानी साइड में रखा है कुछ कागज वगैरह।

हरा हरा पेड़ यहां पे कुछ ईंटों का--

यहां पे एक बड़ासा घला हुआ प्लेटफार्म टाइप का मार्ट दिखाई दे रहा है यहां पे लोहे का गार्ड वॉल दिखाई दे रे है वहां पे लोहे का --

यहां पे एक पहाड़ी चित्र दिखाई दे रहा है यहां पे दूर दूर में छोटा-छोटा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

ये एक दुकान है जो ऑटो मोबाइल का का है।

एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इसके पास बड़ा सा एक तीन तल्ला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक ऑफ रूम का अंदर का चित्र है जहां पे यहां पे।

मशीन रखा हुआ है यहां पे बैठने का भी चेयर है यहां पे मिट्टी का माठ है यहां पे घासें में बड़ा हुआ है नीचे--

साइड में बहोत सारे आदमी औरत लोग बंदे लोग बच्चे लोग सब खड़ा है व्हाइट कलर का एप्रोन पेहन के भी खड़ा है वो लोग बॉक्सिंग करने वाला है।

यहां पे दिया जला हुआ है एक आदमी यहां पे खड़ा है उसका पैंट .